एक घड़ी है और उसके वे वाले हाथ में एक चूड़ा भी पहना--

कोई दो आदमी बैठे हुए हैं और साइड में कोई एक आदमी भी बैठा हुआ है।

पेड़ पौधे बहोत सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में फर्नीचर पर उ एक पेड़ भी दिखाई दे रहे है और पंखा भी दिखाई--

ऑफिस में कुछ भीड़ जमा हो रही है और यहां बहोत सारे लेडिज बुजुर्ग--

और बहोत सारे चीजें भी दिखाई दे रहीं हैं जैसे की--

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और वहां एक गार्डन ही होगा मेरे ख्याल--

यहां पर दो ऑटो और एक व्यक्ति चलते हुए दिख रहे हैं।

और उधर कई सारे दुकान और पेड़ भी देख रहे हैं।

और एक व्यक्ति खड़े भी हुए हैं ऊपर पे--

जिससे उसको देखने में परेशानी नहीं हो रही है।

शॉप है यहां पर एक व्यक्ति खड़े हुए हैं।

सामान दिख रहे हैं और आईस्क्रीम कोक और केक का भी फोटो दिख रहा है।

पेड़ पौधे और पीछे में घर भी दिखाई दे रहा है।

अंकल लोग कोई बैठे कोई खड़े हुए साड़ी दिखा रहे हैं।